यहाँ पर एक महिला नजर आ रही है जो साड़ी पहनी हुई है।

ये पार्लर बॉयज सैलून लग रहा है।

यह चेयर व्हाइट कलर के है और काफी यूनिक है।

यह एक सैलून यह बहुत ही डिजाइनर और लज्जरी सैलून लग रहा है और यहाँ नीचे में जो टाइल्स है वो ब्लैक कलर का मार्बल है।

यहाँ पर बिल्डिंग जो बन ही रही है अभी वो पूरे कंप्लीट नहीं हुई है और उसमें बहुत सारी खिड़कियाँ वगैरा भी है उसमें खिड़कियाँ भी अभी नहीं लगी है बस डिजाइन बना हुआ है और ऊपर में जो आसमान है वो ऐसा लग रहा है बारिश होने वाला है इस टाइप का घिरा हुआ है।